यहां पर देखिए कितना बड़ा मंदिर है और दिखने में बहुत खुबसुरत है देखिए यहां पे कितने लाइट लगे हैऔर और चक मक चक मक कर रहा है देखने बहुत खूबसूरत है ढेर सारे लोग भी है।

ढ़ेर सारा कपड़ा है रंगबिरंग के कपड़ा है कपड़ा है। देखिए कितना बढ़िया-बढ़िया कपड़ा है।

देखिए यहाँ पे एक तलाब है वाले देखने में बहुत खूबसूरत है और यह बहुत अमीर है देखिए कितना बड़ा है और देखने में बहुत अच्छे लगते है यहाँ पे --

खुबसुरत है यहां पे एक कैमरा भी लगा हुआ है और लाइट भी है और देखने मे बहुत खूबसूरत हैं यहां पे एक केवारी भी है।

ये यहाँ पे कितना बढ़िया कोट है लगता है यह दूहा राजा का कोट है दिखने मे बोहोत बहुत खूबसूरत है तीन इधर का तीन --

यहाँ पे देखिये कितना बढ़िया दुकान है यहाँ पे भी मिलता है किताब भी मिलता है यहाँ पे देखिये ढेर सारा सामान भी मिलता है यहाँ पे पेन भी मिलता है।

यहां पे देखिए ए_टी_एम बैंक है और ये भाईसाहब ए_टी_एम से पैसे निकाले हुए हैं और हाथ में रखे हुए है एक भाईसाहब ए_टी_एम में घुसे है।